एक लड़का खडा है जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी है उसके पीछे दिवार से सफ़ेद और काले कलर से पुता है और उसके पीछे ट्रैन की जाने की पटरी पानी के ऊपर बनी है।

सामने भगवान की मूर्ति दिख रही है जिसमें हनुमान जी कृष्णा शिव जी माँ दुर्गा दिख रही है।

और दो आदमी नीचे बैठे है जिन्होंने पिंक कलर की पहनी है कलर की संडो बनियान पहनी हुई है सर पर पिंक कलर का गमछा बांधे हुए हैं।

यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे है और कुछ बना रहे है उनके हाथ में फेविकोल है और एक गमला रखा है जिसमे पौधा लगा हुआ है।

यहाँ पे बहार बच्चे बैठे है बच्चे कुछ बना रहे है उनके पास क्राफ्ट मेन का सामन है मेम साडी पेहनी है साड़ी को पेहनी हुई है।

यह एक डिस्को बार जैसा लग रहा है जहा पर कुछ लड़कियां नाच रही है।

इसके ऊपर वाइट कलर से बॉय लिखा हुआ है उसने हाथो में भी जूते पहने हुए है और ब्राउन कलर का उसका फ्लोर है उसके पीछे मेट जैसी रंग बिरंगे रखे हुई है।